एक आदमी सामने में सामान को देख रहे है।

पीछे भी बहुत सारे आदमी हैं।

एक लाइट भी लगे हुए हैं जो दुकान में है।

पीछे तरफ एक घल दिख रहे है जो धुंधले दिख रहे हैं।

ये बहुत अच्छा सजावट किया हुआ है। बहुत से फूल भी सजाए हुए हैं।

यह एक शॉपिंग मॉल है यहां पर पांच परसेंट ऑफ एम_आर_पी लिखा हुआ है।

भारतीय डाक है। जिसमें हम भारतीय डाक लिखा भी है। जो लाल कलर का है।

उसे गुब्बारे उम एक आदमी लेके खड़े हुए हैं।

बहोत सारे आदमी भी बैठे हैं जो धुंधला दिख रहे हैं।

यह जिम सेंटर है यहां पर सभी आदमी जिम कर रहे हैं।

ऊपर में बहुत बड़ी पोस्टर सटे हुए हैं।

एतिवाला लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ देवघर भी लिखा हुआ है।

आदमी भी खड़ा है बाहर में दु बॉक्स भी रखा हुआ है।

दो फोन पे स्कैनर भी सटा हुआ है।

ऊपर में बैनर भी लगा हुआ है जो लड़की का फेस धुंधला दिख रहा है।

बहुत सारे आदमी भी बैठे हुवे हैं।

बोरा में भी कुछ सामान रखे हुए हैं।

एक बीच में रास्ता भी दिख रहे हैं जो दोनों फील्ड का बीच में है।

बहुत सारे आदमी फिल्ड मै बैठे हुए हैं।

यहा पर एक आदमी साफ करते हुए नजर आ रहे हैं।

बहुत सारे साइड भी पेड़ लगे हुए हैं।

दो एर ट्यूब लाइट भी लगे हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ा घल दिख रहे हैं।

दो अलग अलग गेट भी नीचे में है दोनों में शटर लगा हुआ है।

पीला रंग का फूल दिख रहा है और लाल रंग का फूल दिख रहा है।

उस लेडिस का फेस धुंधला दिख रहा है।

बहुत सारे बर्तन भी दिख रहे हैं।

लिखा भी हुआ है जो देखने में धुंधला दिख रहा है।

पीछे मार्बल्स में लिखा भी हुआ है जो धुंधला दिख रहा है। उसके ऊपर में एक ल लाइट भी जल रहे हैं ।

बहुत सारे मोटीस मोटरसाइकिल बाहर में खड़े हैं।

एक आदमी रेट कोट पेंट के भी बाहर में खड़े हैं जो उसका फेस धुंधला दिख रहे हैं।